तो ऊपर शीशा लगी हुई है।

और ब्लू कलर का और इसके आगे छोटे से टेबल है ऊपर लाइट है पंखा लगाई है बोहत प्यारा घर है ये।

ये नदी है जो काफी बड़ी है और ये नाव है।

तीन लोग हैं दो लोग खड़े हैं और एक --

जो की काफी बड़ी है।

दोनों तरफ यहाँ पे बहोत सारे लोग हैं।

काफी सारे बच्चे और रूम रूम भी अच्छे हैं।

चिकने के ऊपर पंखे लगाए गए है और बहुत सारे लाइट्स है।

ये डॉक्टर लोग हैं जो कि हॉस्पिटल है। यहाँ पे ये दोनों लोग को अ कुत्ते की ट्रीटमेंट कर रहे।

एक फंखा लगा हुआ है। दो खिड़की हैं। उसमें बच्चे बैठे हुए हैं।

ये कपड़ो का दुकान है जो कि कपड़े मिलते हैं। छोटे बच्चों का बड़ा ही --

जो की पार्किंग लगी हुई है और यहाँ पे टेंट लगा हुआ है | बाहर एक गार्ड खड़ा है।

बोहोत सारे लोग है और हरे-भरे पेड़ भी हैं पीछे बिल्डिंग भी है।

यहाँ पे एक ही गेट है जो --

ब्लू कलर से पैंट किया गया है।

इ बैडरूम है यहाँ पे एक-दो तकिये रखे गए हैं जिसका सफ़ेद कलर --

और सामने दो खिड़कियाँ बहुत बड़ी खिड़कियाँ है और ये --